जिम के बाहर कपड़े टंके हुए नज़र आ रहे हैं।

फोटो लेते हुएं दिखाई दे रहे हैं श्री गणेश जी की मूर्ति को--

और नीचे जमीन पर खड़ी औरतें व आदमी दिखाई दे रहे हैं।

जो की प्रेयर कर रहे हैं।

जिसमें दो पीले रंग के सोफा दिखाई दे रहे हैं।

और इसके आगे मेज लगा है जिस पे रंग बिरंगी बोतलें पड़ी हैं।

रंग बिरंगे फूल छोटे गमलों में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं और खेतों में कुछ हरियाली नजर आ रही है।

और यहां बैठने के लिए दो कुर्सियां--

और इसका टायर भी नीचे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

अलमारी में पड़ा हुआ दिख रहा है।

रेट पी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दृश्य को देखते हुए नजर आ रहे हैं।

कॉर्नर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जिनमें से एक का रंग सफेद--

पहने हुए एवम गहने पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऍम बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं और--

सफेद और नीले रंग के गुब्बारों से--